दुकान में कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

पोस्टर में कुछ लिखा हुआ है।

आ सामने एक तरफ बहोत सारे टायर भी है।

सामने की तरफ कई सारे चेयर टेबल दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे पॉट भी हैं जिनपे फ्लावर उगे हुए हैं।

यहां पे कई सारे लाइटें भी लगी है।

दृश्य में बहुत सारे कमरे दिखाई दे रहे हैं।

नीचे की तरफ एक पाइप लगाया हुआ है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है।

सामने की तरफ छत दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ कई सारे मोती रंग के कपड़े रखे हुए हैं।

बहुत सारे गिट्टी भी रखे हुए हैं।

पीछे की तरफ दीवार दिखाई दे रही है।

इसने अपने हाथ में एक बांस पकड़ रखा है।

दो तीन आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य एक घाट का है।

पीछे की तरफ और सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

नीचे की तरफ बैठने की जगह दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

ईटों के घर दिखाई दे रहे हैं।

नीचे की तरफ ऊट दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ एक सूखा पेड़ उगा हुआ है।

सामने की तरफ एक कार भी है।

की तरफ ग्रिल दिखाई दे रही है जो क्लोस्ड है।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

सामने की तरफ और कई सारे पंख लगे हुए हैं।

सामने की तरफ से घर दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ झंडा बनाने वाला जगह भी है।

ड्रावर के अंदर कई सारे सामान रखे हुए हैं।

ऊपर की तरफ आसमान दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक पत्थर दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ दीवार दिखाई दे रही है।

ऊपर की तरफ बहुत सारे कुट के डब्बे भी हैं।

इसके ऊपर दो बच्चों का फिगर बना हुआ है।

यह दृश्य एक पार्टी का है।

अंडा दिखाई दे रहा है।